घर जैसे तीन अलग-अलग हमको घर दिख रहे है जिसमे नीले पत्रे लगे हुए है सफ़ेद दीवारे बनी हुई है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है बहुत ही सुंद--

जैसा की हम देख सकते है ज्यादा यहा पे बहुत सुंदर लग रहा है मल्टी दिख रही है जो की बहुत ही अच्छी दिख रही है मल्टी हमको साइड से दिख रही है मल्टी का कलर गुलाबी दिख रहा है पीला दिख रहा है खिड़किया दिख रही है ऊपर जाली लगी हुई दिख रही खिड़किया उपर की भी ना जाली की दिख रही है।

पीछे हमको दीवार दिख रही है घर दिख रहा है जो की बहुत ही अच्छे दिख रहे है और बहुत ही सुंदर लग रहे है निचे हमको जमीन दिख रही है जो की बहुत ही प्यारी लग रही बहुत ही सुन्दर लग --

जैसा कि हम देख सकते है सामने हमको बहुत बड़ी मल्टी दिख रही है मल्टी हमें काचों की दिख रही है कांच और सफेद काचों की दिख रही जो इमारत है उनको सफेद कलर हरे कलर की नीले कलर की दिख रही है।

जैसा कि हम देख सकते हैं हमको एक पक्षी दिख रहा जो की काला कलर का दिख रहा है जिसका एक पाव पानी के अंदर है जो कि दूसरा पाव हवा में दिख रहा पीछे झाड़ियां दिख रही जो की हरी हरी दिख रही जो की बहुत ही सुंदर लग रही है।

साइड मे पेड़ दिख रहे जो की बहुत ही अच्छी लग रहे और बहुत ही सुंदर लग रहे हाइट साइड आपको झाड़ीया दिख रही जो की बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी लग रही।

एक मालिक दिख रहा है साइड मे खिडकी दिख रही है खिड़की मे काँच लगे हुए दिख रहे है जो की बहुत अच्छे दिख रहे है एक बड़ा गेट लगा है जिसमे से नीचे जाने का रास्ता दिख रहा है जो की बहुत अच्छा दिख रहा है। घो--

जैसा की हम देख सकते हैं सामने हमको स्टेशन दिखा है स्टेशन पर हमको सामने मल्टी दिख रही है जो स्टेशन की बनी हुई मल्टी दिख रही है जो की बहुत अच्छी लग रही है रैलिंग लगी हुई है जो की लोहे की लगी हुई है।

साइड मे चड़ाव् बने हुए है दोनों तरफ जो कि बहुत अच्छे दिख रहे है पीछे हरे-भरे पेड़ है जो कि बहुत ही अच्छे दिख रहे है नीचे खाली मैदान है जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है ऊपर खुला आसमान है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग--

जैसा कि हम देख सकते हैं कुछ चट्टान देख रही चट्टान पहाड़ी की चट्टान दिख रही ऊपर दो आदमी दिख रहे जो के ऊपर चढ़ते हुए दिख रहे जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे सफेद टी-शर्ट में एक आदमी दिख रहा जो ऊपर की ओर चढ रहा हैं।

जैसा की हम देख सकते सामने हमको चिड़िया दिख रही है बहुत सारी इसमे हरी चिड़िया दिख रही कोई सफ़ेद चिड़िया दिख रही कोई हरी और काली चिड़िया दिख रही है।

जैसा की हम देख सकते सामने हमको जंगल दिख रहा जंगल के हमको अंदर हमको हरे हरे पेड़ दिख रहे इसके अंदर हमको एक हाथ दिख रहा जिसके सफ़ेद फूल है हाथ मे जो की बहुत ही सुंदर लग रहा बहुत ही प्यारा लग रहा --